और कांच की दीवार है छोटे-छोटे जा ऊपर गमला हैऔर लाल कलर का फू फूल है पीला कलर का फूल है।